ये एक कोचिंग है उसके आस-पास पांच छे सात साइकिल लगी हुई है और एक स मोटर साइकिल भी है।

और एक नई मकान बन रही है जो ऊपर से बिजली का तार भी गया हुआ है और इसी से पैक करने के लिए जाली लगा हुआ है और ये ब्यूटी मेडिकल शायद है कुछ हमें ब्यूटी मेडिकल है और ये रोड पीछे से ढला है उसके बाद बाइक पल्सर है|

कलर भी बहुत अच्छा किया हुआ है ग्राउंड भी मस्त है साथ ही आसपास के जितने भी माँ बिल्डिंग है सब जबरदस्त है ऊपर आसमान का तो कुछ बात ही नहीं --

मर्मर भी है। बढ़िया हॉस्पिटल यहाँ पे। भी होता है यहाँ पे ऑपरेशन छोटी ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन करके भी होता है। नर्सिंग होम ये साफ-साफ ये लिखा हुआ नरस्मिता नर्सिंग होम में ग्रिल लगा हुआ है। बोहोत बढ़िया है फैसिलिटी ठीक-ठाक है यहाँ पे। सब कुछ ठीक --

ये मेरा सिनेमा हॉल है। संदर मूवी लगता है लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। वोडाफ़ोन का ऑफिस भी है। उसी के बगल में ग्रिल लगा हुआ है। अंदर में बाइक लगने का जगह बनाया हुआ है।

ट्रेन का सारा गेट बंद है।

सभी गेट भी खुले हुए हैं अभी सिनेमा चल रहा है ऐसा प्रतित हो रहा है अंदर में सभी आदमी फिल्म देख रहें होंग --

और एक दो तीन चार पांच दोस्त हैं पाँचों दोस्त कोई कुरता पहने हुए हैं तो कोई शर्ट पेंट पहने हुए तो कोई दिन जींस सर्ट पेहेन केे खड़े हैं कोई पगड़ी बांधे हुए हैं |

अभी स्टाफ इसमें लग रहा है किसी ले खिड़की --

कुछ बेंचे हैं उजला कलर के कलर से किये हुए हैं। कुछ अ ग्रे कलर के रंग कलर से रंग किये हुए है। यहाँ एक खम्भा है पंखा भी लगा हुआ है।

एक्शन का सीन है जहाँ बोहोत ही अद्भुत --